और कुछ लोग खड़े हुए हैं इस तरफ यहां पर बहोत सारे पेड़ बने हुए हैं।

जो लोग दिए जला रहे हैं उनके टी_शर्ट ब्लू कलर की है और नीचे पैंट ब्लैक कलर की है।

दो बच्चे एक पकड़ रहा है और एक भाग रहा है।

यहां पर फिश पॉट रखे हुए हैं काफी तरह के और यहां पर पीछे तरफ फिश का खाना और--

यहां पर राइट साइड पर पेड़ है और एक रेलिंग लगी हुई है और खिड़कियां हैं ब्लैक कलर की।

सफेद कलर के तकिए हैं जिसके ऊपर ब्लू कलर से--

ये रेड कलर से लिखा हुआ है और डेरी ब्लू कलर से यहां पर उनके दो नंबर भी नी--

यहाँ पर पर्पल कलर के पर्धे लगे हुए और दो--

एक घर टाइप बना हुआ है। उसके आगे काफी सारी आंटियां लड़कियां खड़ी हुई है। इसके साइड में--